बसो के आसपास बहोत सारे लोग भी उपस्थिति है।

दुकान का नाम क्रिस्टल कलेक्शन गिफ्ट एवं श्रृंगार स्टोर है।

दिखाये गए दृश्य में एक बड़ा सा गुफा दिखाया गया है।

यह एक पार्किंग अलॉट है पार्किंग एरिया के फर्श को टाइल्सो से ढका गया है।

एक बड़ी सी बिजली की तार एवं बहोत सारे बिजली के खंभे भी हैं।

दुकान के आसपास बहोत सारे स्कूटर भी दिखाई दे रहे हैं।

आस पास बहोत सारे पेड़ पौधे भी उपस्थित हैं एवं बोरियां में कुछ रखा हुआ है।

एक नीले रंग का करेट भी दिखाई दे रहा है।

रेल की पटरियां एवं उनपर गिट्टी भी दिखाई दे रहा है।